इसका उपयोग हमारे घर में बहोत होता है| सब्जी बनाने में भी इसका उपयोग होता है कुछ लोग दाल का तड़का भी इस से देते हैं|

दुल्हा एक सफेद कलर की कार से आया हुआ है और बहुत से बाराती उस कार के अगल-बगल खड़े हैं।

यह कोई खेल का मैदान यहां पे बहुत से लोग टहल लहे हैं यह मैदान काफी बड़ा है और इस मैदान में हरी हरी घांसे उगी हुई है।

उसके ऊपर चीनी मिट्टी के बनी मछलियां रखी हुई है।

ये व्यक्ति संभवतः इस किताब का राइटर है जो कि इस किताब की विशेषताओं को लोगों को बता।

ये देखने में काफी हरा भरा दिख रहा है यहां काफी पेड़ पौधे हैं यहां पे कसरत करने से हमारी बॉडी में फुर्ती आए ती है।

और ये बैंक पूरी तरह से सी_सी_टी_वी की निगरानी में है इस बैंक में लॉकर भी है।

यहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग इत्यादि होती है। इस समय यहाँ पे मारुती कंपनी की सेलेरिओ कार यहाँ आ के खड़ी है। जिसकी सर्विसिंग लग रहा है होनी है।